ए_टी_एम की एक साइड में एक डोर नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में एक रूम नजर आ रहा है रूम पर काफी सारे पंखे लटके हुए हैं दो ऐ_सी भी नजर आ रही है।

एक बड़ा सा मॉनिटर नजर आ रहा है।

खेड के पीछे वाले वाल्स में कुछ ड्राइंग बनी हुई है।

समुद्र पर एक छोटा सा बोट और एक बड़ा सा शिप नजर आ रहा है।

थोड़ी सी मिट्टी भी नजर आ रही है समुन्दर के किनारे पर।

पेट्रोल पंप का कलर कुछ ब्लू एंड रेड कलर का है।

पिक्चर में एक वाइट कलर की गाड़ी नजर आ रही है।

एक रूम पर बहुत सारी चीज रखी हुई है।

रूम मे एक बड़ा सा बोर्ड रखा हुआ है साइड में डस्टबिन भी दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग के आगे एक ब्लैक कलर की और एक वाइट कलर की कार पाक्ड है।

गेट के पीछे कुछ बिल्डिंग्स नजर आ रहे हैं।

नदी के ऊपर एक लंबा सा ब्रिज नज़र आ रहा है।

इस पिक्चर मे एक लंबी सी येलो कलर की वॉल नज़र आ रही है।

इस पिक्चर में काफी सारे बसेस नजर आ रही है।

कुछ ही दूर में दो बिल्डिंग्स नजर आ रहे हैं।

ये एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।

पेट्रोल पम्प के अंदर एक बड़ा सा ट्रक नजर आ रहा है।

भी ने अपने हाथो को सेम तरीके से पकड़ा हुआ है।

कूल के आसपास काफी सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बच्चों ने ब्ल्यू येलो ग्रीन और कुछ बच्चों ने रेड कलर की टी शर्ट्स पहनी हुई है।

गारी के नीचे कुछ येलो कलर की चीज रखी हुई है।

दूसरी साइड में और एक दुकान दिखाई दे रही है।